यहां पर ढेर सारा लोग जेंट्स और लेडिस लोग छठ करे हुए हैं।

गोदाम के अंदर मशीन है।

ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ है हरा कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

एक लेडिस बैठी हुई हैं एक खड़ी हुई हैं एक जेंट्स हैं।

एक बोर्ड टंगा हुआ है हरा कलर का।

ये वाटर पार्क है।

आ साफ सुथरा जगह हुआ है।

फोटो लगा हुआ है।

एक हाथ से छू रहा है एक हाथ नीचे में है।

एक आदमी है नीचे झुका हुआ है।

एक कार है।

तीन आदमी है एक लेडिस है।

पंखा का डिब्बा है।

और एक लकड़ी का बैठने वाला जगह है जहां पर एक व्यक्ति एक महिला--

और फूल लगा हुआ है।

चारों तरफ ईटा से छेका हुआ है।

अह ऊपर से गेहूं का है।

पीछे में रेलिंग वेलिंग दिया हुआ है लंबा लंबा चार गो खम्मा है।

आ बिलूम से सजाया हुआ है।

ब्लैक कलर का ब्लू में जींस पेहना हुआ है जूता पेहना हुआ है।

और लोहा का पाइप है इसका खंबा है गाड़ा हुआ है।